कुछ छोटी छोटी काच खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक लकड़ी की टेबल दिखाई दे रही है तीन व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

ड्रेस के आस पास की बात करो तो मुझे कुछ सामान दिखाई दे रहे हैं जैसे हथौड़ी टूल बॉक्स ।

इस तस्वीर में मुझे फर्श पे कुछ चलकती हुई टाइल दिखाई दे रही है और सामने की तरफ मुझे कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

इस तसवीर में मुझे एक लकड़ी की बनी हुई कुर्सी दिखाई दे रही है इसके पास में एक मुझे --

इस तस्वीर में मुझे चकले की सड़क दिखाई दे रही है सामने मुझे डंबर की सड़क दिखाई दे रही है जो ग्रिप से बनी हुई है।

सामने की तरफ मुझे एक बड़ा सा महल दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कुछ छतरियां भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ दुकाने दिखाई दे रही है जिसपे एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ नाम भी दिखाई दे रहे हैं।